पे दूल्हा दुल्हन बैठ सकते हैं और काफी अच्छा नज़ारा लग रहा है गोल्डन कलर का है पीछे अच्छा लग रहा है लाइटिंग लग रही है और बेंच पड़ी --

यहां सरिये लगे हुए हैं। फावड़ा रखा हुआ है और तस्ले रखे हुए हैं बजरी रखी हुई हैं खंबे खड़े हुए हैं इंसान भी है। यहां पे बनाना --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

यह एक बैंक या पूछताछ केंद्र है यहां पे तीन लोग खड़े हुए है यहां एक लाईट जल रही है।

ब्लैक बोर्ड है एक और यहाँ एसी भी लगी हुई है और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ --

पैसे निकालने की मशीन है। सामने एक ताला लगा हुआ है जिस डोर में और एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें डस्टबिन का कूड़ा फेंका जाता है। झाड़ू वगैरह भी रखी हैं।